अ दो पय्या वाहने खड़ी है किनारे पर और कुछ एक चिमनी मे से कुछ धुआ बाहर निकल रहा है। आसमान पे बादल छाए हुआ है। एक इमारत भी है।

ये चित्र एक बड़ी सी सड़क का हैयहा बहुत सारी दुकाने है और दो पैया वहाने खड़ी है।

यह चित्र चंद्रपुर शहर महानगर पालिका का है यहा अ-यहा दो ज-जगह दादर सिडिया बनी हुई है। ऊस --

के बगल मे एशिअन पेंट की दुकान है और रंग की दुकान है यहा बहुत सी रंग की डिब्बे रखे हुए --